ये एक गैरेज है जिसका नाम पाल ऑटो गैरेज है जो की समय अभी बंद है।

और इसके सामने एक बाइक भी रखी हुई है जो कि हुई है और वहाँ पर एक टेबल भी लगा हुआ है।

ये केक की बहुत ही अच्छी स्मूथिंग दी गई है और इसमें कैलंडर भी बनाया गया है।

यह सैलून के अंदर की इमेज है जहाँ पर बार्बर एक बंदे की --

हेयरकट कर रहा है और सामने की तरफ एक आदमी बैठकर अपना कार्य कर रहा है।

माता दुर्गाजी की मूर्ति यहां पर लगी हुई है और सामने की तरफ कुछ लोग ---